यह बाबा बैजनाथ धाम का एक पिक्चर है जिसमें की बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं तो कुछ व्यक्ति खड़े हैं।

यह पवित्र स्थान झारखंड राज्य के देवघर जिला से बिलॉन्ग करते हैं।

ज्योतिर्लिंग का एक प्रमुख स्थल है जिसमें की बाबा भोलेनाथ की पूजा की जाती है।

यह एक साफ सुथरा कमरा है जिसमें दो से अधिक सोफे लगाए गए हैं ।

बाएं साइड में एक अ नल का व्यवस्था किया गया हैं जिसमें दो वो नल लगा हुआ हैं।

इसमें अलग अलग रंग की चूड़ियां बेची जाती हैं और अदर में बहुत सारे सामान बेचा जाता है।

यह एम_आर गार्डन के नाम का एक पैलेस है जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे लाइटों का प्रयोग करके सुहावना बनाया गया है।

एक व्यक्ति पेट्रोल पंप से सटे हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं।

पेट्रोल पंप के बगल में बहुत सारे बाइकें खड़ी हैं।

यह एक बेकरी का भाग है जिसमें गुलाब के आकृति से बनाई गई कुछ आकृतियां दिखाई गई है।

यह एक समुद्रीय तटीय क्षेत्र है जिसमें समुद्र के तट से लग कर एक बड़ी जहाज इसमें उतरी है।

बहुत से तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं आपस मे बात चित कर रहे हैं साफ सुथरा--

एक शीशा है जिसमे एक व्यक्ति का पिक्चर बना हुआ है।

दो से अधिक इसमें चेयर लगे हुए हैं। बहुत ही बड़ा शीशा लगा हुआ है साफ सुथरा क्षेत्र है।

पूरा का पूरा रूम बहुत ही साफ सुथरा है कलर किया हुआ नीचे फर्श में मार्बल बिछाया गया है।